जहाँ की एक अअ बच्चे झूले पे झूल रही है।

एक है एक व्हाइट कलर का कुर्ता-पैजामा हैं।

दूर आसमान वाइट और ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

जले कलर के घर दिखाई दे रहे।